यहां एक जगह है जिसके आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे और बहुत सारी हरियाली दिखाई दे रही है और यहां पर एक बीच मे मूर्ति भी दिखाई दे रही है।

वो सफ़ेद कलर में दिखाई दे रही है यहाँ एक घर दिखाई दे रहा है जो की सफ़ेद कलर में दिखाई दे रहा है और ये बहुत सुंदर लग रहा है।

और यहाँ फुग्गे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ लाइट और कुछ पंखे भी दिखाई दे रहे है और यहाँ पर बहुत सारी कुर्सीयाँ दिखाई दे रही है और यहाँ पर बहुत सारे कांच और कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है।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

और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गैम खेलते हुए दिखाई दे रहे है।